और नीचे टाइल्स का फर्श हुआ दिखाई दे--

सामने एक जिम दिखाई दे रहा है जिसपे एक मशीन पर एक लड़का लेटा हुआ नजर आ रहा है जिसने जूते पहन रखे हैं और सामने ही दीवालो पे रेड और काले कलर का दिखाई दे रहा है।

सामने शादी का हॉल दिखाई दे रहा है जिस पे फूल से डेकोरेट किया गया है आसपास कुर्सियां रखी हुई है सामने गणेश जी का पोस्टर लगा हुआ है और नीचे दरी बिछी हुई है।

सामने जाली लागि हुई है बोहोत से लोग उनको खरीद ने के लिए लाइन मे खड़े हुए नजर आ रहे है नीचे फर्स दिखाई दे रहा है पत्थर का--

एक लड़का आते हुए नजर आ रहा है सामने बहोत एक बेग भी नजर आ रहा है और अन्दर दुकान मे कई लोग खड़े हुए नजर आ रहे है ।

जो कुर्सी पे बैठे हुए दिखाई दे रहे है सामने एक हॉल भी दिखाई दे रहा है ऊपर एक घंटी भी लटकी हुई है।